जो शीशे के अंदर भी है और बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है ये दुकान साड़ियों का ही होलसेल दुकान नजर आ रहा है।

यहां से लोग खरीद कर अपने घर को ले जाते हैं और फूल या गमलों में लगाकर छत के शोभा को बढ़ाते हैं या फिर बगीचे में भी लगाते हैं।